उसने चाँदी की चूड़ियां पहनी हुई हैं। हाथ में पर्स है एक औरत ने गले में हार पहना हुआ है।

गड्ढों में पाना भरे हु पानी भरा हुआ है। कुछ फत्तर भी बड़े बड़े --